यह राजा महाराजाओं के समय का दिखाई पड़ता है।

जहां पर एक कार को रिपेयर किया जा रहा है और उसको सही किया जा रहा है।

इसे देखने पर मुझे बेहद खूबसूरत दृश्य दिख रहा हैं।

और यह बहुत ऊंचाई पर है तो इसका जो दृश्य है वो मुझे पाताल पानी जैसा दिखाई दे रहा है।

जिसे देखने पे बड़ा ही प्यारा और सुंदर दिखाई पड़ रहा है।

यह मोटर घर के अंदर टंकी का पानी ऊपर की छत की टंकी भरने मे काम आता है।

और मुझे देखने पे यह दृश्य काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि--

होटल मे खाने पीने की सारी व्यवस्था है और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही पर है जो कि--